आस पास छत पे कुछ सामान रखा हुआ है पास ही में कुछ--

ग्राउंड के अंदर एक झंडा लगा हुआ है जिसकी उचाई काफी है।

यह ये एक रोड है जिसमे कुछ सामान लगा हुआ है पास में एक छटाई डाली हुई है पास में टेबल पर कुछ मूर्ति --

यह एक मन्दिर है जिसके अन्दर कुछ गाड़ियां रखी हुई हैं। एक कार है मोटर साइकिल है एक शटर लगा है जो बन्द है।

काफी संख्या में व्यक्ति हैं जो खड़े हुए हैं कुछ स्कूल के बच्चे हैं।

यह एक शोरूम है जो जॉकी के नाम से है इसमें कुछ--

इसमें काफी रंग बिरंगी लैटे जल रही है भई पास में सड़क जिसपे कार जा रही आस पास कुछ कारे खड़ी हुई है।

यह एक हॉस्पिटल है जिसके बाहर कुछ साइकिल रखी हुई हैं जो काफी संख्या में है वहीं बगल में एक--

आज से पीले आस पास कुछ और सामान रखे हुए हैं इसमें काफी संख्या में लहटें जल र--

यह एक पार्क है जिसमें हरी भरी घास लगी हुई है आस पास कुछ काफी संख्या में पेड़ पौधे हैं।

यह एक मकान है जिसके बाहर एक दीवाल पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं एक व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है।

ये है एक जिसमे कुछ में लाईटे लगी हुई है कुछ--

और सब्जी बना रहे हैं कुछ व्यक्ति सब्जियां काट रहे हैं पास ही में एक टैंकर लगा हुआ है जो सिंगल टेंट हाउस के नाम से है।

यह एक स्कूल की बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें योगा का चित्र दिया हुआ है।

ये हैं एक बस स्टैंड हैं जिसके बाहर कुछ काफी संख्या में बस रखी हुई हैं कुछ रेड कलर की कुछ ग्रीन कलर की उसी के बाहर कुछ व्यक्ति --

यह एक बिल्डिंग है जिसके बाहर कुछ रंग हरि रेड कारपेट बिछी हुई है उसके ऊपर कुछ लड़कियों ने--

बस कुछ पेड़ पौधे लगे हुए है ऐसे में तालाब में पानी भरा हुआ है--

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमे काफी संख्या में टेबल और कुर्शियां रखी हुई है उनके ऊपर ऊपर--